ऊपर बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

फ्रिज ग्रे कलर की है फ्रिज के ऊपर भी सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक औरत और एक बच्चा दिख रहा है।

इस दुकान के बाहर बहोत सारे बैलून से सजावट की गई है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत सारी बाइके भी लगी हुई है।

के बाहर टाइल्स से बनी रोड बनी हुई है।

यहां ग्राउंड के कोने कोने में बाउंड्रीज बनी हुई है।

यहां पर पीला हरा और सफेद रंग के पंछी दिख रहा है।

उस एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां भी हैं।

होटल के बाहर स्टील से बने काउंटर लगे हुए हैं।

इस ढाबे मे बहुत सारे चेयर और टेबल भी लगे हुए हैं।